पेड़ पौधा लोक रहा है और वहा झील है आर वहा पर म गाछ उच्च लोक रहा है वहां पर मट्टी ऊटी है।

वहां पर लोहा लॉक रहा है वहां पर पाइप उप नायफ नट उट--